यहाँ पर एक लोहा का बहोत ही बड़ा दो बच्चे चले जा रहे है फिर कुछ नजर आ रहे हैं।

आसमान के रंग भी अच्छे लग रहे हैं जो कि देखने से अच्छा लग --

यह एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में काफी सारे मरीज है और यहाँ बड़े-बड़े डॉक्टर भी आए हैं।

यहाँ दिखाया गया है जो की देखने में बहुत ही सुन्दर और बहुत छोटे-छोटे लाइट्स भी हैं ।

बना कर उसमें अलबेस्टर का इ दे के बहोत ही अच्छे से रह --

और यह बच्चा बहोत ही सुंदर देखने में लग रहा है इसका कलर --

यह काफी खूबसूरत है यह और इसपे इसपे चढ़ने की काफी सारे सीढ़ियां भी लोहे की लगाऐ गए है ।

काफी सीढियाँ भी बनाई गई हैं जो कि लोग --